रूबी में व्हाइल और उंटिल लूप्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न उपयोग करना सीखेंगे व्हाइल लूप उंटिल लूप रेडो और ब्रेक हम उपयोग कर रहे हैं उबन्टु वर्जन 1204 रूबी 193 इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है
आपको लिनक्स कमांड्स टर्मिनल और टेक्स्ट एडिटर का ज्ञान होना भी ज़रूरी है
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँ
शुरू करने से पहले याद रखें कि हमने तत् डिरेक्टरी पहले ही बना ली थी
उस डिरेक्टरी पर जाते हैं
फिर रूबी हाइफेन ट्यूटोरियल और लूपिंग हाइफेन स्टेटमेंट्स डिरेक्टरी पर अब हम उस फोल्डर में हैं आगे बढ़ते हैं
रूबी में व्हाइल लूप का रचनाक्रम निम्न प्रकार है व्हाइल बूलियन एक्सप्रेशन रूबी कोड इंड एक उदाहरण देखते हैं
गेडिट में एक नयी फाइल बनाते हैं जैसा कि रूबी के प्रारंभिक स्तर के ट्यूटोरियल्स में दर्शाया है
इसको व्हाइल हाइफेन लूप डॉट आरबी नाम दें
मेरे पास व्हाइल लूप का कार्यकारी उदाहरण है
अब टर्मिनल खोलें और टाइप करें गेडिट स्पेस व्हाइल हाइफेन लूप डॉट आरबी स्पेस एएमपी ट्यूटोरियल को पूरा समझते समय बीच में रोककर कोड टाइप करें
इस उदाहरण में मैंने एक व्हाइल लूप घोषित किया है
पहले मैंने एक लोकल वेरिएबल आई घोषित किया और इसे वैल्यू 0 से शुरू किया
फिर मैं एक व्हाइल लूप घोषित करती हूँ
यह लूप निष्पादित होगा अगर आई 10 से ग्रेटर है
पट्स मेथड व्हाइल लूप में घोषित हुआ है जो आउटपुट दर्शायेगा
आउटपुट दर्शाने से पहले आई की वैल्यू में 1 की कमी करते हैं
अगली बार दोहराते समय आई इस कम की गयी वैल्यू को लेगा
हर बार दोहराते समय वेरिएबल आई में कमी होती है
यह चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 10 तक न पहुँच जाये
इस पॉइंट पर व्हाइल कंडीशन रुक जाएगी
इसके पश्चात लूप टूट जाता है और आउटपुट प्रिंट होना रुक जाता है
अब टर्मिनल पर जाते हैं और टाइप करें रूबी स्पेस व्हाइल हाइफेन लूप डॉट आरबी और आउटपुट देखें
आउटपुट में 0 से 9 तक के नंबर्स की सूची होगी
अब आप रूबी में व्हाइल लूप लिखने के लिए सक्षम होने चाहिए
अब आगे उंटिल लूप देखते हैं
रूबी में उंटिल लूप का रचनाक्रम निम्न प्रकार है उंटिल बूलियन एक्सप्रेशन रूबी कोड इंड एक उदाहरण देखते हैं
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें गेडिट स्पेस उंटिल हाइफेन लूप डॉट आरबी स्पेस एएमपी ट्यूटोरियल को पूरा समझते समय बीच में रोककर कोड टाइप करें
इस उदाहरण में मैंने एक उंटिल लूप घोषित किया है
हमने एक लोकल वेरिएबल आई घोषित किया और इसे 0 से प्रारम्भित किया
फिर हम एक उंटिल लूप घोषित करते हैं
यह लूप निष्पादित होगा अगर वेरिएबल आई की वैल्यू 10 से ग्रेटर हो
पट्स मेथड आउटपुट प्रदर्शित करेगा
आउटपुट प्रदर्शित होने के बाद आई की वैल्यू में 1 की कमी होती है
अगली बार दोहराते समय आई इस काम की हुई वैल्यू को लेगा
हर बार दोहराते समय वेरिएबल आई में कमी होती है
यह चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 11 तक न पहुँच जाये
इस पॉइंट पर उंटिल कंडीशन बंद हो जाएगी
इसके पश्चात लूप टूट जाता है और आउटपुट प्रिंट होना रुक जाता है
अब टर्मिनल खोलें और टाइप करें रूबी स्पेस उंटिल हाइफेन लूप डॉट आरबी और आउटपुट देखें
आउटपुट 0 से 10 तक नंबर्स की सूची रखेगा
आप अब रूबी में अपना उंटिल लूप लिखने में सक्षम होने चाहिए
अब रेडो कन्स्ट्रक्ट पर जाते हैं
रूबी में रेडो के लिए रचनाक्रम निम्न प्रकार दिया है160 आ कलेक्शन ओएफ objectsईच डीओ इतेम आ कंडीशनल स्टेटमेंट रूबी कोड रेडो इंड कंडीशनल इंड लूप मेरे पास रेडो लूप का एक कार्यकारी उदहारण है
अब टर्मिनल खोलते हैं और टाइप करें गेडिट स्पेस रेडो हाइफेन लूप डॉट आरबी स्पेस एएमपी ट्यूटोरियल को पूरा समझते समय बीच में रोककर कोड टाइप करें
इस उदाहरण में मैंने एक ईच लूप घोषित किया है
10 से 20 तक नंबर्स दोहराने के लिए हमने एक ईच लूप घोषित किया
फिर हम एक इफ कंडीशनल स्टेटमेंट समझाते हैं
लूप 10 से 20 तक प्रत्येक नंबर के लिए निष्पादित होगा
अगर आई की वैल्यू 20 के बराबर है तभी यह इनर कंडीशनल इफ कंडीशनल ब्लॉक एंटर करेगा
ईच लूप में घोषित पट्स मेथड आउटपुट दर्शाता है
जब प्रोग्राम इफ कंडीशनल ब्लॉक एंटर करता है तो यह पहले आउटपुट प्रिंट करेगा
फिर यह रेडो निष्पादित करेगा
रेडो सर्वाधिक भीतरी लूप का दोहराव निष्पादित करेगा
लूप कंडीशन को जाँचे बिना ही यह ऐसा करेगा
हमारी कंडीशन है इफ आई 20 परिणाम अनंत लूप होगा चूँकि आई की वैल्यू 20 से नहीं बदलेगी
अब टर्मिनल खोलें और टाइप करें रूबी स्पेस रेडो हाइफेन लूप डॉट आरबी और आउटपुट देखें
आउटपुट में एक अनंत लूप होगा जिसका कोई अंत नहीं
अनंत लूप को समाप्त करने के लिए CtrlC दबाएं
अब ब्रेक स्टेटमेंट को देखते हैं
रूबी में ब्रेक स्टेटमेंट का रचनाक्रम है आ लूपिंग स्टेटमेंट आ कंडीशनल स्टेटमेंट ब्रेक इंड कंडीशनल रूबी कोड इंड लूप एक उदाहरण देखते हैं अब टर्मिनल खोलें और टाइप करें गेडिट स्पेस ब्रेक हाइफेन लूप डॉट आरबी स्पेस एम्परसैंड
ट्यूटोरियल को पूरा समझते समय बीच में रोककर कोड टाइप करें
मैंने इस उदाहरण में एक ईच लूप घोषित किया है
यह उसके समान है जो हमने पहले उपयोग किया
यहाँ पट्स मेथड आउटपुट में 11 से 19 तक नंबर्स प्रदर्शित करेगा
एकबार जब वैल्यू 20 हो जाती है तो प्रोग्राम कंडीशनल इफ ब्लॉक एंटर करता है
इस पॉइंट पर ब्रेक स्टेटमेंट आएगा और यह लूप से बहार निकल जायेगा
अब टर्मिनल खोलें और टाइप करें रूबी स्पेस ब्रेक हाइफेन लूप डॉट आरबी और आउटपुट देखें
आउटपुट में 10 से 19 तक नंबर्स होंगे
अब आप अपना ब्रेक कन्स्ट्रक्ट बनाने में सक्षम होने चाहिए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
इसको सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने उपयोग करना सीखा व्हाइल लूप उंटिल कन्स्ट्रक्ट रेडो ब्रेक कन्स्ट्रक्ट एक नियत कार्य की तरह 100 से 115 के बीच तक नंबर्स लें जो फैरन्हाइट को दर्शाते हैं
निम्न उपयोग करके एक रूबी प्रोग्राम लिखें उपयुक्त लूप कन्स्ट्रक्ट जो फैरन्हाइट से सेल्सियस कन्वर्जन फॉर्मूले को उपयोग करता है दी गयी नंबर्स की रेंज के विरुद्ध थे टेम्परेचर हस रीच्ड आ सर्टेन डिग्री सेल्सियस एंड हस बीकम अनबियरेबल आउटपुट दर्शाने के लिए
जब सेल्सियस में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो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
ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र देती है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
इस मिशन पर अधिक जानकारी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो पर उपलब्ध है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद